यहाँ अच्छा-अच्छा कपड़ा मिलो हकै। बहुत सुन्दर अच्छा लगो हकै।

लिखल है बहुत सारा मोटरसाइकिल हक्के साइकिल है यहाँ एक आदमी ठेला लेके आ रहल है अच्छा लगो गड्ढा भी हक्के ओने पानी निकलो हक्के उधर गति है काज --

आरो ए कह कई चुनमुनिया-उनमुनिया सब लगल हकै बहुत अच्छा लग हई देखे में।

यहाँ पर बहुत मोटर साइकिल हई। एगो बोलेरो हई। एगो बहु गाछ हकै।

यहाँ पर कोई कहा हई अ पुल बनतइ अच्छा लगो हई पूला। बहुत अच्छा से बन रहल।

यहाँ पर टोटो के यहाँ पर एक शोरूम हैके की कह हथीन टोटो ल उतर रहलै।